इस साइड काफी मिट्टी वगैरह दिखाई दे रही है तो आगे की तरफ से थोड़ा घास--

कोई प्रोग्राम चल रहा है जैसे कि छब्बीस जनवरी का प्रोग्राम होता है या फिर क्रिसमस डे का प्रोग्राम होता है ऐसा लग रहा है।

उगे हुए हैं और काफी बड़े बड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें कि बेंजो वगैरा रखे हैं आगे टायर धरा है।

इस फोटो में तो हम देख सकु है ये शायद कबाड ट्र वेगेरा दिखाई दे रही कुछ क्योँकी--

और ये काफी ग्राउंड दिखाई दे रहा है इसमे जिसमे छोटे छोटे पेड़ पोधै वगैरा बोए हुए है और घास की कटिंग करके घास को एसे डाला हुआ है सड़क के पास आप देख सकते है।

जिसमें देख सकते हैं आप अलग अलग तरह की मशीने रखी हुई हैं लाइटिंग लगी हुई है पीछे बोर्ड लगे हुए हैं एम वाई का--

जो बाहर ते बिल्कुल फुट रही है और सारा समान इसका अलग अलग तरह से दिखाई दे रहा है।